यह एक परचून की दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें एक आदमी बुक खरीद रहा है और कुछ बुकें टंगी हुई हैं।

यह एक शादी के लिए डेकोरेट किया गया है जो की--

दो चेयर भी यहां है औरत का पर्स भी रखा हुआ--